अंडरवियर और बनियान देख रहे हैं ये यहां पे जेंट्स के अंडरवियर और बनियान हैं और यहां पे आप देख सकते हो जो --

ये यहां पे देख सकते हो ये एक आदमी है और यहां पे हथोड़ी भी रखी हुई है छड़ी भी रखी हुई है।

औरत ने लाल रंग के कपड़े पहेन रखे हैं।

और ये यहां पे बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं।

यहां पे आप देख सकते हो बहुत अच्छी डेकोरेशन कर--

देख सकते हो यहां पे वॉशबेसन भी दिख रहा है।

और यहां पे ट्रैक्टर भी खड़ा हुआ है यहां पे आप--

आदमी भी खड़े हुए हैं। एक आदमी ने काले रंग के कपड़े पहने हुए हैं और यहां पे फूल भी--

लाइट लगी हुई है और यहां पे ये मशीन --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

और यहां पे आप देख सकते हो--

और यहां पे बहुत सारी कुर्सियां रखी हुई हैं।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

पीले और काले रंग की पट्टी दिख रही है और यहां पे देख सकते हो आसमान दिख रहा है।

और यहां पे ये पेड़ भी लगे हुए हैं।

आसमान दिख रहा है और यहां पे बहुत सारे घर दिख रहे है।

से नाव चला रहे हैं और यहां पे ये समुंदर दिख रहा है।

यहां पे आप देख सकते हो आसमान दिख रहा है और यहां पे ये बत्तकें सा आकार में--

पाइप लगे हुएं हैं यहां पे आप देख सकते हो।

और यहां पे आप देख सकते हो चारों ओर हरियाली ही हरियाली दिख रही है।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

ये यहां पे झोपड़ियां दिख रही हैं।